एक सीमेंट डाली जाती है जिसका मिक्सर बनकर निकलता है।

इसके पंख खुले हुए बहुत सुंदर लग रहे ये मोर नीचे है और इसके पंखों पे --

ये फोटो एक बिल्डिंग की है जिसपे गेट लगा हुआ है और आगे की दीवार कांच से --

एक गाड़ी का स्टैंड दिख रहा है और एक बाहर पोस्टर लगा हुआ है।

जिसका नाम फतेहगढ़ है। फतेहगढ़ से होती हुई ये रोड --

इधर कुछ आदमी आ रहे है जिनके हाथ में थैले है। उनके साथ एक औरत भी है।

इस फोटो में मुझे एक हाथी दिख रहा है। उस हाथी के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है।